नमस्कार आपका स्वागत है
यह एक अधिक स्पष्टीकरण विडियो है
जब आप PHPपीएचपी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपका सामना कुछ आम एरर्स से हो सकता है मैं उनके बारे में बताऊँगा
उनमें से अधिकतर स्व व्याख्यात्मक होती हैं
मैं कहना चाहूँगा कि 50 एरर्स जिनसे आपका सामना होता है तब होती हैं जब आप ग़लती से कुछ टाइप कर देते है और ध्यान नहीं देते या आप कुछ छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं
ऐसी गलतियाँ सभी करते हैं अर्धविराम छोड़ना या एक अतिरिक्त कोष्ठक जोड़ना या इसी प्रकार से कुछ
अब मैंने यहाँ पर कुछ पेज बनाएँ हैं
यह कुछ एरर्स हैं जिनसे आपका सामना संभव है
वहाँ और भी हैं
यह सूची संपूर्ण नहीं है
यह केवल कुछ मूलतत्वबैसिक्ससमाविष्ट करता है
आपको प्रत्येक एरर एक एक करके समझाने के लिए मेरे पास एक कांटेक्स्ट एडिटर तैयार है
अतः पहला जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वह htmlएचटीएमएलहै
मैंने यहाँ पर काफी htmlएचटीएमएल का उपयोग अपनी echoएको कमांड में किया है
यदि मैं इस पेज को यहाँ रन करता हूँ हमें यहाँ पर यह एरर मिलती है
यह पारसे एरर कह रहा है और हमें यह सूचना यहाँ पर मिल रही है
वस्तुतः आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है अल्पविराम या फिर अर्धविराम अपेक्षित है
यह हमें एक लाइन संख्या देता है
अतः जब हमें इनमें से कोई एक पारसे एरर मिलती है यह हमेशा ही एक लाइन संख्या देगा
यह यहाँ पर लाइन 5 दिखा रहा है
अतः यदि हम नीचे लाइन 5 पर आते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइन 5 कॉमा 19 ल्न5 कोल19 हमें सारी सूचना मिल गयी है
लाइन 5 यहाँ पर है
अब यहाँ पर दृष्टिगत रूप से यह गलत नहीं है
phpपीएचपी जिस तरह से echoएको कमांड का अर्थ लगाता है वह यह है कि हमें शुरुआती स्थान हमारे डबल उद्धरण चिन्ह यहाँ पर मिल गये हैं और अंत यहाँ पर
अतः यह आरंभ होगा और यह अंत
वस्तुतः अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्योंकि हम htmlएचटीएमएललागू कर रहे हैं हम इसके बीच में डबल उद्धरण चिन्होंका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका मतलब यह है कि एको कमांड को यहाँ से शुरू और यहाँ पर अंत समझ लिया जाएगा
मेरे खयाल से मैं यह मेरे एको फंक्शन के ट्यूटोरियल में समझा चुका हूँ
अच्छा हमें इस लाइन में एररमिलने का कारण यह है क्योंकि यह डबलउद्धरण चिन्हों की पहली उपस्थिति है जहाँ इसे नहीं होना चाहिए
अब तकनीकी रूप से phpपीएचपी ने इसे नहीं लियाअतः यह यहाँ पर नहीं होना चाहिए
लेकिन यह अर्धविराम कि अपेक्षा करने के बारे में यहाँ कह रहा था के जब हम एको का अंत करते है हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं
अतः यह इसके लिए जो देख रहा था वहाँ पर है
किन्तु तब इसके बाद भीयह बिलकुल निरर्थक बन जाता है
अतः हमें क्या करने की ज़रुरत है कि इसके बदले हम अपने सिंगल कोटेशन मार्क्सका प्रयोग करें
अब यदि मैं इसे सेव करता हूँ हमें अब लाइन 6 पर एक एरर मिलेगी क्योंकि एरर इसके नीचे आ गयी है यह 6 में बदल गया
देखिये आप जानते हैं कि लाइन 6 पर या लाइन 6 के नज़दीक आपको कुछ बदलने की आवश्यकता है
आप कुछ और अन्य देखेंगे जो हम कर रहे हैं कुछ वास्तविक लाइन एरर नहीं दे रहे हैं
और आपको यह मिला
अतः आपको अपना htmlएचटीएमएलकोड रन करने के बाद यह मिला
स्पष्टतः यहाँ पर व्यावहारिकता नहीं है
किन्तु हमने उसको कर लिया है
अच्छा तो मैं दूसरा अर्धविराम करने जा रहा हूँ
यह एक दूसरी सामान्य एररहै
हम यहाँ पर वापस जाते हैं और अर्धविराम पर क्लिक करते हैं
हमें यहाँ पर एक पारसे एरर एक्सपेक्टिंग आ सेमीकोलों मिली है
अब हम अर्धविराम की आशा क्यों कर रहे हैं
यह कोड ठीक दिख रहा है
हमें यहाँ पर एलेक्स के साथ एक वेरिएबल मिला है
हमारे पास यहाँ पर एलेक्स के साथ एक अन्य वेरिएबल है
हम इन वेरिएबल्स की तुलना कर रहे हैं
हमें इसके अंदर दो बराबर चिह्नों कि आवश्यकता है
यदि यह शर्त सही हैहम यह सूचना एकोकरेंगे
अब यदि हम यहाँ जाते हैं line नो
तो सचमुच में यह एक बहुत ही सरल कोड है
यदि यह थोड़ा ज्यादा जटिल होता आप लाइन 9 पर आते किन्तु वास्तव में यह लाइन 9 है
अब इसको देख कर कह सकते हैं कि यहाँ लाइन 9 में कुछ भी ग़लत नहीं है
किन्तु किसी तरह इस लाइन में कुछ न कुछ तो ग़लत है
यहाँ पर क्या हो रहा है कि पह्प पीएचपीजिस तरह से पेजों का अर्थ लगाता है वह एक लाइन के आधार पर है
अतः जो कोड हमने यहाँ देखा है वह उसी के समान है
यह वास्तव में कम्पाइल होगा और कार्य करेगाकिन्तु यह यहाँ पर नीचे है और यह इसी तरह यहाँ ऊपर है हम अभी भी इसके बाद अर्धविराम की अपेक्षा कर रहे हैं
यदि हम यह करते हैं यह अभी एक मान्य कोड होगा
अतः मैंने वहाँ पर एक अर्धविराम जोड़ दिया है जबकि अगर आप देखें तो इसे यहाँ पर होना चाहिए
हम इसे यहाँ नीचे ला सकते हैं
अतः मैं इसे अभी फिर से रन करता हूँ
तो हमने कर लिया
अतः हमें एक सफल पेज मिल गया
स्पष्टतः यदि मैं इसे यहाँ ऊपर रखूँ तो यह भी एक मान्य कोड होगाजैसा कि वह होना चाहिए
अतः phpपीएचपी उस आधार पर कार्य नहीं करता कि इस लाइन पर यहाँ एक एरर है
यह सामान्यतः यह बताता है कि वर्तमान लाइन रन नहीं हो सकती क्योंकि पिछली लाइन में एक एरर है
अतः अर्धविराम के बिना इस लाइन पर इस एरर की वजह से यह लाइन नहीं रन हो सकती
इसलिए यह लाइन लाइन 9 पर एक एरर के रूप में वापस मिली है
आप यह यहाँ देख सकते हैं
अतः यह दो मूल एरर्स हैं जिनको हमने समाविष्ट किया
यदि कभी आपको ऐसी कोई चीज़ मिलती हैतो केवल जाँचें और अनिवार्य नहीं है कि जिस लाइन पर एरर मिली है उसी को जाँचें
पीछे जाँचे आगे जाँचें
नहींआगे नहीं किन्तु पीछे जाँचें और देखिये यदि आप कुछ ठीक कर सकते हो
यदि आपको करना पड़े तो पूर्णतः प्रत्येक अक्षर का पर्यवेक्षण कीजिये
मुझे लोगों से काफी ई मेल्स मिले हैं जिन्होंने इस तरह की ग़लतियाँ की हैं और मुझे लोगों की सहायता करने में कोई हर्ज़ नहीं है
बेझिझक पूछिएकिन्तु यह सुनिश्चित कर लें कि आप अपना कार्य मुझे भेजने से पहले एक दो बल्कि तीन बार जाँच लें
अतः अगले भाग में हम बचे हुए एरर पेजों के बारे में जानेंगे
जल्द ही मुलाकात होगी
मैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद